यहा टेबल के ऊपर एक टेलीफोन भी रखा गया है।

यहां पर कुर्सी के ऊपर तीन महिलाएं और एक पुरुष बैठे हुए है।

रेलवे स्टेशन का दृश्य दिखाया गया है।

स्टेशन के ऊपर काफी हरियाली देख सकते हैं।

होली के दिन का दृश्य दिखाया गया है।

होटल के बाहर का दृश्य दिखाया गया है।

यहां पर हम एक फौजी को भी बैग टांगे हुए खड़े हुए देख सकते हैं उन्होंने कैप लगाई हुई है।

इस तस्वीर में हमें एक सड़क का दृश्य दिखाया गया है।

जहां पर हम देख सकते है कि यहां कैबिज नीले रंग की प्लाईवुड से बने हैं।

उसने अपना लेफ्ट हैंड पॉकेट में पाया हुआ है।

देख सकते है कि स्टेज के ऊपर कुछ व्यक्ति खड़े हुए है तो कुछ बैठे हुए है।

जहां पर हमें कुछ पहाड़ भी देखने को मिल रहे हैं।

और हम सड़क किनारे अलग अलग गाड़ियां खड़ी हुई देख सकते हैं।

यहां पर हमें स्पाइडर मैन बैटमैन अवेंजर्स कैप्टन अमेरिका तक के--

की इस बिल्डिंग मे छोटे-छोटे घर बने हुए है।

इस ढाबे का नाम है हिमांशी ढाबा।

इस तस्वीर में हमें एक बहुत ही पुराने किले का दृश्य दिखाया गया है।

जहां पर हमें काले रंग की--